सरकारी दवाएं किस-किस का बीमारी हुआ है ये नरेंद्र मोदी का एलान है।

सबको घर घर पे बीमारियों का दवाई मिल जाना चाहिए देख सकते हैं और काफी --

और यहां बच्चे खेल रहे हैं कोई कूद रहा है और ये मिले --

में यहां देख सकते है बहुत ही प्यारा-प्यारा सीन दिखाई दे रहा होगा आपलोगों को यहां से वहां लिए गए।

देख सकते हैं सात सो छियासी --

हेलो गाइस देख सकते हैं यहां पे --

और यह गांवो में पानी पहुंचाया जाता है देख --

यहाँ पे मेला वगैरा लगा हुआ है ।

और जबरदस्त लोग देख सकते हैं रेस में ये भाई लोग अपना अपना सामान को देखने के लिए रखा हुआ है और --

हेलो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे फूल वगैरा लगे हुए है और बहुत ही

और ये सोने और काफी बड़े मंदिर है देख सकते हैं |

और ये ये लोग कर रहे हैं देख सकते हैं और ये बहुत ही फूल और यह रोज है।

हेलो गाइस देख सकते हैं यहां पे --